यहां एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है जिसमे घड़ी लगी दिखाई दे रही है। ऊपर व्हाइट आसमान दिखाई दे रहा है इमारत के सामने कुछ ठेलिया लगी दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक लड़का खडा दिखाई दे रहा है जिसने व्हाईट टोपा लगाया और हरा जौकेट पहने हाथ बांधे खडा दिखाई दे रहा है पीछे लोहे की सलाखे खडी दिखाई दे रही है।